एक जेंट्स सैलून है जहां पे अक्सर लोग अपने बाल बनवाने कटवाने के के लिए दाढ़ी बनवाने के लिए इनके फेसिअल फैशियल करवाने के लिए और जो भी --

ये बच कोई बच्चो का क्लास है या आँगन बाड़ी केन्द्र --

कुछ आदमी भी खड़े और गाड़ियाँ भी खड़ी पार्किंग में लगी छोटी गाड़ियाँ जहाँ पे पैसेंजर आकर अपने गन्तब्य तक जाने के लिए सवारीयाँ पकड़ते हैं |

शहर से दूर भीड़ भाड़ इलाके से बिल्कुल शांतिप्रिय जगह पे है अच्छा स्टेडियम है लोकेशन अच्छा है।

और मंच भी अच्छे बनाये गये हैं जहाँ से भाषण बगेरा प्रोग्राम का आयोजन किया जा सकता है यही तो अच्छा है।

जहाँ पे कॉफ़ी चाय टी जैसे सभी तरह के पेय पदार्थ मिलते हैं और यह काउंटर है जहाँ पे दो व्यक्ति जहाँ से कुछ पाने के डील कर रहे हैं।

बच्चे एक से बढ़ के एक से कागज पेन और के द्वारा अपनी कला कृतियां बनाने का प्रयास रहे है।

मंदिर या ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ पे पर्यटक लोग घूमने आये हुए हैं या अपने पूजा पाठ कर रहे हैं।